खड़ी है और गमले रखे--

बहुत सारा लाइट और--

यहां पर सामने बहोत बड़ा सा--

दिख रहे हैं और ये पेड़ की--

और बहोत सारे बच्चे क्राफ्ट बना रहे हैं।

दिख रहा है गार्डन में हरे घास और पेड़--

वाला और बहुत सारी सब्जियां रखी हैं।

टंगे हैं रेड और ब्लू कलर के--

ग्राउंड है और ग्राउंड में--

आसमान में बादल दिख रहा है।

दिख रहा है और सोफे पे--

पीछे भी सोफा रखा है दुकान में और नीचे--

हॉल है और हॉल में ऊपर बहुत सारे--

यहां पर सामने बहुतो लो आदमी हैं और--

यहां पर सामने बड़ा सा--

ए_सी लगा हुआ है सामने--

यहां पर सामने एक बड़ा सा--

अंदर काउंटर लगा हुआ--

बड़ा सा हॉस्पिटल है और--

यहां पे सामने एक पेड़ है।